और यहां पे एक डांस क्लासेस चल रही है जहां पर बहुत सारी लड़कियां डांस की प्रैक्टीस कर रही है।